विवों लिखा हुआ है और सामने बोहोत सारी बाइक है और सुनसान सड़क है और बोहोत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। सड़क पर।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

मॉल दिखाई दे रहा है। इस मॉल में एक कार है जो छोटी कार है। जिसका कलर फिरोजी है और दो स्लाइडर --

आ पीछे एक गेट लगा हुआ है जिसका कलर फिरोजी है एक शटर लगा हुआ है जिसका कलर फिरोजी है ऊपर एक बोर्ड लगया हुआ है जिसका --

कुछ घर दिखाई दे रहे हैं और एक कुछ बोरियाँ दिखाई दे रही हैं। एक स कार का कलर सफेद है। कु ऑटो रीक्शा का कलर लाल है।

सड़क पर ऊपर साइड साइड पेड़ लगे हुए हैं।

एक हाथ में कप पकड़ा हुआ है जिसका कलर सफेद है। एक बच्चा खड़ा हुआ है जिसने काले कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है। एक बच्चा बैठा है जिसने फिरोजी कलर की टी-शर्ट पहनी है। एक बच्चे ने --

इस इमेज मे हम देख पा रहे हैं कि यह एक हरा भरा खेत है जिस मर एक --

ओर बोहोत सारे पेड़ छोटे-छोटे लगे हैं। नीचे घास उँ घास है जो बोहोत ही मनमोहक दृश्य प्रतीत कर रही --

कूल है इसका एक बड़ा गेट लगा है। जिसमे जो जिसका कलर लाल है। ऊपर एक चेन छत डाली हुई है जिसका कलर फिरोजी है। ऊपर खुला एक आसमान है।

इस तस्वीर में हमें एक सोफ़ा नजर आ रहा है। उसके पीछे एक गेट है। सोफ़े का कलर कत्थई है और पीछे फिर गेट का कलर सफ कत्थई है। नीचे एक नीचे फर्श है जिसका कलर सफेद है।

इस तस्वीर में हमें एक खेल का मैदान दिखाई दे रहां है जिसमें स्कूल के छोटे छोटे बच्चे खेल खेल रहे हैं। स्कूल के बच्चे ने फिरोज़ी कलर की टीशर्ट --